पीछे और बैग हैंनीचे टाइल्स लगा हुआ है।

दीवाल का कलर सफेद है।

यह एक दुकान का तस्वीर है।

इसके ऊपर पुल बना हुआ है।

आसमान में बादल है सन सेट हो रहा है।

मुंह के बगल में मोटी मोटी पाइप लगी हुई है।

सामने एक वाइट कलर का काउंटर है। उसके ऊपर एक बैग एक स्कैनर रखा हुआ है।

जे एक पहाड़ है और बड़ा सा एक जंगल है।

ढेर सारे पिलर्स लगे हैं।

और लिप्सटन के पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे एक पौधा लगा हुआ है।

इसका नीचे का कलर हल्का डीम है।

ये सारे व्हाइट सीलिंग लाइट्स जल रहे हैं।

शर्ट ब्लैक टाई लगाये कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक तालाब का तस्वीर है।

एक बाक्स फेंका हुआ है।

यहां पर ढेर सारे कुर्सी टेबल रखे हुए हैं।

सामने रोड है एक बूढी औरत खड़ी है।

बच्चा पीला कलर टी सर्ट पहना हुआ है।

एक सीढ़ी रखी हुई है।

यहां पर बस खड़े हैं।

इस तस्वीर में दो बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे है जिसका कलर पीला है।

काफी लाइट है बड़ा सा ग्राउंड है।

बेड के बगल में स्विच बोर्ड है।

यह एक कार का तस्वीर है जिसका कलर रेड है ।

आदमी बाल्टी पकड़ के बैठा हुआ है।

नीचे ढेर सारे गिट्टी के टुकड़े फेंके हुए हैं रेत फेंकी हुई है।

एक ब्लू कुर्सी रखी हुई है।

इसके सामने एक करकेट का घर बना हुआ है।

इसका कलर गुलाबी और ग्रीन है।

ढेर सारे लैंप लाइट लगे हुए हैं।

अब रंग बिरंगे साड़ी पहनी हुई हैं।

सामने एक छोटा सा बच्चा है।

पीछे सबका परछाई दिख रहा है।

दीवाल का कलर बादाम कलर है।

यह एक बड़े से हॉल का फोटो है।

सामने हल्का सा तिरपाल से छारा हुआ है।

जहां पर ढ़ेर सारे अलमारी बनाए हुए हैं।

पीछे ढेर सारे कतार में चूड़ी का डिब्बा रखे हुवे हैं।

बिल्डिंग में एक पंखा लगा हुआ है।

यह एक बड़े से बिल्डिंग का तस्वीर है।

इसमें शॉपिंग मॉल बीकानेर रेस्ट बीकानेर ई_आर ओ साइन ये सब लिखे हुए हैं।

बरसात का मौसम लग रहा है।

इस तस्वीर में एक कोंटर बना हुआ है।

बिल्डिंग में छेद छेद है।

यहां पर कतार वाइस ढेर सारे कपड़े समेट के रखे हुए हैं।

निचे थैला और कुछ बंधा हुआ रखा हुआ है।

ढेर सारे मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है।